लगवा के खड़े हैं और पीछे घर सा नजर आ रहा है और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे।